जो ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना है और पहाड़ के दोनों तरफ हाथ फैलाए हुए है।

जिस में से दो स्कार्पियो है और एक कार लगी हुई है एक स्कूटर है और एक बाइक है।

यह तस्वीर किसी कंप्यूटर शोप की लग रही है सामने में एक आदमी कंप्यूटर के साथ सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है ।

यह तस्वीर एक सड़क की है।

इसका यूज़ हम लोग अपने अकाउंट से पैसा निकालने के लिए करते हैं।

और बगल में बहुत से अच्छे फूल का डिज़ाइन बनाया गया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।

और ये एक बहुत बड़ा वाइट कलर का बिल्डिंग है सामने से गेट है और गेट के बाहर एक डस्टबीन बॉक्स रखा हुआ है ।